ये देख सकते है समुन्द्र है। ये बहुत सुन्दर दिखाई दे रहा है। इसके आस-पास --

यहाँ सड़क के पास बहुत पानी जमा है कुछ लोग चल रहे है।

सामने दुकान है ऊपर मकान वगैरा अच्छा दिखाई दे रहा है। बंद है अभी।

पासपोर्ट बनाता है। आपके घर में वेरिफिकेशन करने जाता कि कोई केस वगैरा आपके ऊपर तो नहीं है। बाइक है।